यहाँ पे काफी लोग फिटनेस के लिए आते हैं यह बहुत ही बड़ा जिम हैं यहाँ पे तरह-तरह के मशीनें लगायी गई हैं यहाँ पे काफी सारे विनर लगाए गए हुए हैं यहाँ पे एक लोग हैं जो की सेल्फी ले रहे हैं।

इस चर्च को बहुत ही सुन्दर डेकोरेट किया गया हैं यह चर्च की सजावटे बहुत ही अच्छी हैं।